यहाँ डिज़ाइन काफी सुन्दर है।

पीछे की और कुछ पेड़ लगे हुए है।

पेट्रोल पंप में कई सारी झंडियां लगी हुई है।

कुछ लोग टेहल रहे है कुछ लोग--

काे का सामान यहाँ बिगड़ा पड़ा हुआ है।

यहाँ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है जो देखने में काफी सुंदर लग रहे है।